यह एक माल का फोटो है इसमें से यहां पर बहुत सारी साम कपड़े रेक बनाकर लगाई गई है कतार से।

बैठने के लिए लगायी गयी है यहां पर नीचे में सोफा --

जिन्होंने एक मास्क भी पहना हुआ है जो सफेद कलर का है।

यहां एक किसी गेट का फोटो है।

एक गेट में बहुत बड़ा लगाया गया है लोहे का दीवार--

उस पर लिखा है बरनवाल सेवा सदन ।

किन्ही ने ब्लैक कलर का पहना हुआ है टी शर्ट तो एक ने रेड कलर का।

जो बहुत बड़ा है जो सफेद कलर से उसे रंगा गया है।

इसमें से यहां पर एक लड़का है जो फोटो ले रहा है जो ब्लैक कलर का टी_शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है।

यह एक बैंक का फोटो है जिसमें से यहां पर एक बड़ौदा बैंक ऑफ लिखा है पोस्टर पर।

एक बगल में एक व्यक्ति है कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ।

एक ने पीला कलर टी शर्ट पहना हुआ है तो एक ने ब्लू ।

अंदर में एक बहुत बड़ा घर भी है।

यह एक जिम का फोटो है जिसमें से यहां पर एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है।

वैसे यहां पर बहुत सारी लाइटें बहोत सतरंगी कलर की लगाई गई है।

कुछ व्यक्ति भी है जो उधर बैठे हैं और कुछ खड़े हैं।

एक इधर डिब्बे में लिखा है पेट सफा वाला डब्बा भी है।

इधर एक एल्वेस्टर का घर भी है।

एक उधर काउंटर के आगे में एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कुछ काम कर रहे हैं।

पीछे में दो एक्सटेंशन बोर्ड भी रख लगाया गया है।

पीछे में बहोत सारी डम्बलें और एक्सरसाइज की बहोत सारी समानें रखी गई है।

एक पोस्टर भी है सिएट का है जिस पर लिखा है सिएट फ्यूल्स स्मार्ट टायर्स ।

एक बेड पे एक तकिया भी है जो सफेद कलर का है और एक कंबल भी है।